इस दृश्य में हमें यह दिखाई दे रहा है कि यह एक खाने पीने की दुकान है सामने एक फ्रिज है।

पास में ही कुछ लोग भी खड़े हैं और एक कुर्सी भी है।

ग्राउंड के आस पास बहुत बड़े बड़े पेड़ है।

इसमें हमें यह दिखाई दे रहा है कि यह एक खिलौनो की दुकान है।

और पास ही में एक खिड़की भी है।

और ऊपर बहुत ही चमकदार लाइटे लगी है। दीवारों पर फोटोस लगी है और एक ए_सी भी लगा है।

सामने एक नीला डस्टबिन रखा हुआ है।

यहां सामने समंदर है और पास में ही --